यहां दिखाई दे रहा है कि ये एक रेलवे स्टेशन है।

इसके लेफ्ट साइड में रास्ता गया है और राइट साइड में भी रास्ता गया है इसके डायरेक्ट सामने --

यह जानवरों को नहलाने के लिए उनके लिए स्विमिंग पूल बना--

उसके बगल में एक दुकान है उसमें लिखा है क्रिकेट ट्रेडर्स --

उसके आगे दो गाड़ियां खड़ी हुई हैं दुकान के आ--

जो कि करता है रेड कलर का उसके--

एक व्यक्ति व्हाइट कलर का पहना है एक लड़की है बगल में एक स्प्रे टंगा है।